मन रेंगत थे और बाइक मा बी बइठिसे। ई पार बांड्री बनिसे। बांड्री के ओ पार बड़े कने जंगल हरे।

इस चित्र में एक बहोत बड़ा हॉल हैं जिसमें बहोत सारे बैड़ लगे हुए हैं।

ये चित्र में एक बहोत बड़ा मजिद है जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक झालर लाइट लगाए हैं।

सीढ़ी भी लगी हुई है ऊपर ग्रीन कलर की लाइट जल रही है।

ये पेट्रोल पंप रोड के किनारे अ लगिसे बिजली के ह खंभा दिखत हे अ तार हा लटकी से बिजली के --

ये चित्र में एक बहोत बड़ा लाइब्रेरी है जिसमें बहोत सारे बुक्स रखे गए हैं।

और दूसरी लड़की चेयर में बैठके देख रही है।

अपार्टमेन और अपार्टमेंन के नीचे बड़े बड़े पेड़ भी लगे हैं।

और बहुत सारी बस ग्राउंड में खड़ी है।

एक चित्र में एक बहोत बड़ा पेट्रोल पंप है जिसमें--

और ये चारो तरफ बड़े पिजरा से कवर है और--

पानी पानी अरे और पूरे ब्लू कलर के पानी के रंग दिखत हैं।